और बोट पर जो है ब्लू टाइप के दिखाई दे रहे है कुछ भवन दिखाई दे रहे है उजला टाइप के दिख --

आगे एक मोटरसाइकिल पर दो सवार है।

अगल बगल जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में यू_पी_आई का एक तस्वीर दिखाई दे रहा है।

जो रैक पर जो है बहुत तरह के कपड़े--